यहां पर अ एक बिल्डिंग है और नीले कलर की सा इसमें गेट लगा हुआ है और इनकी सीढ़ियां भी कलरफुल हैं।

यहां पर अखबार के रोल से सोफे बनाए गए हैं रोल करके उन्हें और कुर्सियां बनी हुई है सोफा है मेज है।

ये एक जिम सेंटर की जिम सेंटर है और यहां पर जो है बहुत सारी मशीनें हैं और बहुत सुंदर साफ सुथरा है यहाँ।

और यहां पर ये ऊपर की तरफ बहुत सारे बल्ब चल रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारी गाय हैं और इनके खाने का भी खाने की भी जगह बना रखी है और पीने के लिए भी बहुत बड़ी हौदियां बना रखी है।

यहां पर एक नदी है बहुत बड़ी और यहां पर कुछ झाड़ियां सी लगी हुई हैं नदी में--

और यहां पे यहां पर एक पत्थर पड़ा है और यहां पे बहुत सारे पत्थर हैं।

और यहां पर बहुत मेज और कुर्सी भी डाल रखी है सोफे डाल रखे हैं टेंट में--

और यहां पे ये रेस्टोरेंट टाइप का है और इन लोगों ने बड़ा स्टाइलिश यहां पे रेस्टोरेंट बनाया है।

लोगों के बैठने के लिए और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ लगे--

हार्ट शेप बने हैं फूलों से सजे हुए और एक लड़का है जो--

और पीछे की तरफ बहुत सारे इसमें फूल लगे हुए हैं और उधर की तरफ--

यह एक बहुत बड़ी दुकान है और यहां पर शीशे में--

और यहां पर एक बाल्टी रखी हुई है काउंटर है यहां पर कैची रखी हुई है पेन रखा है।

और यहां पर कुछ लेडीज हैं जो डांस कर रही हैं और बहुत से बहुतसों के हाथ में--

भी के हाथ में एक पत्ते हैं उन्होंने मतलब बहुत-बहुत बड़े पत्ते बना रखे हैं।

और पीछे की तरफ मटके रखे हैं कलश हैं जो लाल और पीले कलर के हैं और उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं।

और बहुत सारी हर तरीके की साइकिल है कोई पीले कलर की है कोई नीले कलर की है कोई काले कलर की है।

यहां पर कोई एक कुछ यह बना हुआ है यहां पे और यहां कुछ लिखा है।

और यहां पर एक टंकी लगी हुई है और यहां पे--

ये गिफ्ट की दुकान है और यहां पर बहुत सारे छोटे-छोटे गिफ्ट रखे हैं लाफिंग बुद्धा का है लेडीज है बुढ़िया है कथक कथक वाली वो है लेडीज है।

ऋषि मुनि है मतलब बहुत सारे भगवानों के भी यहां पे मूर्तियां हैं और यहां पर बहुत सारे गमले फूल गमले हैं जो गेंदा के फूलों --

यहां कपड़ों का भी शोरूम है यहां पर कपड़े भी बहुत सारे हैं गरम गरम कपड़े भी हैं कोट है जैकेट है।

और यहां पर जो है बेड पड़ा हुआ है उस पे दो तकिए हैं चद्दर पड़ी हुई है तौलिया पड़ी हुई है।

और यहां पर पत्थर बड़े-बड़े हैं और यहां पे बहुत सारा कचरा सा कूड़ा सा पड़ा हुआ है।

लाल कैप लगा रखी है और बहुत लोगों ने अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रखे हैं।

और यहां पे नींबू है और चुकंदर है टमाटर है गाजर है धनिया है लौकी है ।

सफेद रंग की कुर्सी भी हैं यहां पर और यहां पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं।

और ऊपर जो पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है और सामने की तरफ एक--

कुछ घर वर हैं और वहां पर जो है रोशनी पड़ रही है।

एक आदमी है अंदर की तरफ जो वहां से कुछ निकाल के देख रहा है और निकाल के ला--

बहुत जगह कटी हुई है और यहां पर जो है बहुत सारे लोग हैं।

और यहां पे चद्दर पड़ी है और कुछ सामान भी पड़ा हुआ है यहां चेयर भी रखी हुई है।